ये एक चिनखारियों का बना हुआ पुराना ब्रिज हैं।

ये एक पुरानी हवेली दिख रही है इसके मिनारे पे दो घड़िया बन रही है।

एक आदमी लूँगी डाले हुए है उसका फेस का कलर लाल-लाल- सा हो रहा है और बाइकें खड़े हुए है एक नीले कलर की --

ये एक नगर पालिका निगम है।

सामने जोली एल_एल_बी टू का पोस्टर दिख रहा है और बिल्डिंग मे कांच भी लगा हुआ है और नीचे रोड पर कार खड़ी हुई ब्लैक कलर की दिख रही है।

एक दुकान खुली हुई है। उसका नाम अप्सरा है। अप्सरा पीले कलर से लिखा हुआ है ।